ये हे एक चित्र है चित्र के अंदर बहोत बड़ा घर कॉलेज बना हुआ है।

शेर नजर आ रहा है और बहुत बड़ा जंगल भी दिखाई दे रहा है।

यह एक चित्र है चित्र के अंदर एक गुरुद्वारा नजर आ रहा है।

ऐ_ सी भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सी लाइटें और पोल भी लगे हुआ है।

यह एक चित्र है चित्र के अंदर--

यह एक चित्र है चित्र के अंदर बड़ा तालाव बना हुआ ।

यह एक चित्र है चित्र के अंदर बड़े-बड़ी बिल्डिंग ऐ नजर आ --

यह एक चित्र है चित्र के अंदर बड़ा सा तलाव नजर आ रहा है आसपास बहुत सी बिल्डिंग है बड़े-बड़े पैड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक चित्र हैं चित्र के अंदर कुछ घर नजर आ रहें हैं।

कुछ बोतलें भी दिख रही हैं।

ये एक चित्र है चित्र के अंदर बहुत बड़ा गिटार और क्लॉक नजर आ रहा है।

जिसके आसपास बहुत बड़ा तलाब ब बहुत सी नावें भी नजर आ रही हैं।

यह एक चित्र है चित्र के अंदर बड़ा सा मेला नजर आ रहा ।

जिसमें तरह-तरह के झूले भी दिख रहे।

यह एक चित्र है चित्र के अंदर बहुत बड़े --

यह एक चित्र है चित्र के अंदर कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

यह एक चित्र है चित्र के अंदर बहुत सी दुकानें नजर आ रही है।

और एक बहुत बड़ा स्टेज बना हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें कुर्सियां भी रखी हुई नजर आ रहे हैं।

यह एक चित्र है चित्र के अंदर बहुत बड़ा तलाब नजर आ रहा है जिसमें बहुत सी नाव भी रखि हुई नजर आ रही है आसपास।

बहुत से पेड़-पौधे भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।